यह एक बैंक है। बैंक का जो उपर बोर्ड लगा हुआ है वो नीले रंग का है।

सफ़ेद रंग का बनाया गया हैं। यहाँ आगे एक लड़का --

यहाँ पे लगभग बारह से पंद्रह टीवियाँ हैं।

इसके बाहर टुटा हुआ पेड़ भी पड़ा हुआ है।

यहाँ पूरी टीम भी खड़ी हुई है स्ट्रैट हुई हुई एक के हाथ में फुटबॉल भी है।

और दूसरी तरफ पैसेंजर ट्रेन भी खड़ी हुई है।

यहाँ बड़ा सा त्रिशूल भी लगा हुआ है।

बड़े से लेकर बड़े पेड़ छोटे से लेकर छोटो पौधे भी दिख रहे हैं।

यह फोटो किसी गार्डन का हैं।

ऊपर आसमान भी दिख रहा है और नीम का पेड़ भी दिख रहा है।

यहाँ एक दुकान दिख रही है।

और पिलरो पे भारत माँ के झंडे का रंग किया गया हैं।

यहाँ बहौत सारे लोग शायद पिकनिक करने आए हुए हैं।

जिन्होंने अतरंगी-अतरंगी कलर की ड्रेसें पहनी हुई हैं।

यहाँ खिड़कियाँ और दरवाजे भी नजर आ रहे हैं।

इसके साइड में एक जरनेटर भी रखा हुआ है।

जो पूरा अच्छे से सजाया गया है लाइटो द्वारा।